आसमान नीला है। एक लड़का जो हरा कलर का टी शर्ट पहना है।

मुस्जित के उपर पानी का टँक है जो उजला कलर का है।

एक सोफा लगा हुआ है आगे कुच्छ कॅमेरेका वो हरे रंग का लगा हुआ है लाल रंग का धड़ी बिच्छाया गया है।